और इनके इन क्राफ्टिंग के बेसिस पे इन्हें मार्क्स मिलेंगे और के अनुसार इनमे फॉर सेकंड थर्ड चुना जाएगा और टॉपर भी--

कुछ कलाकृतियां करना पसंद करते थे ताकि वह डिफरेंट दिखे और ब्यूटीफुल भी दिखे तो वैसा ही ये एक बॉल है कलर टाइप ब्यूटीफुल --